एक बड़ा सा बोर्ड पीछे की तरफ लगाया गया है ऊपर जो है सफेद रंग की छत है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

चित्र में जो है एक आदमी की तस्वीर है जो तकिये पे लेटा हुआ है।

इस चित्र मे जो है एक पार्क की तस्वीर है जहाँ पे बोहोत सारी झड़ियाँ हैं ।

इस चित्र मे जो है एक चर्च दिख रहा है जो कि अंदर से है बाहर की तरफ बहोत सारी झाड़ियाँ है।

बाहर हरी झाइयाँ है ऊपर की तरफ खुला आसमान है दीवारों का रंग जो है सफेद है।

पीछे की तरफ खुला आसमान है झड़िया है बहोत सारे मिट्टी के ढेर लगाया गया है एक लहरी खड़ी हुई है।